जैसा आप लोग देख रहे हो ना ये घर बना रहे हैं।

और रूम भी देख रही हूं कितना चकाचक है दीवार पे पोस्टर लगे हुए हैं।

यहां पे गौर से देखो आप यहां पे दौड़ रहे--

कर को क्या बोलते है ये तो मुझे नही पता यहां पे सामने देखो गेट के बाहर दो बाईक हैं।

जहां पे गाड़ी में आता है मशीन में आता है।

जरूरी समान है जैसे कि खाट रखा हुआ है।

यहां पे कुछ भी कर मिल सकता है ये आपको खरीद सकते हो यहां से।

मॉल को देखो कितनी अच्छी तरह से सजाया गया है बैलून से।

पूरा भाईबाइक तो नहीं दिख रहा है पर आधा करके दिख रहा है।

एक आदमी भी खड़ा हुआ है और साइड पे पड़े पौदे है।

यहां पे देखो साइड पे घर भी है ग्रीन कलर करके और येलो कलर ब्लू कलर करके और पेर भी।

अभी देखो एक बरा सा जगह पे रखा हुआ है।

जहाँ पे तेल वगैरह मतलब की ये जो तेल है ना आप किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते--

यहां पे हेलमेट मिल मिल रहा है और एक चेयर दिख रहा है।

इस दुकान को देखो इस दुकान पे--

ये एक खिलोने का दुकान हैं जहाँ पे बच्चों के खेलने की चीजे जैसे कि बबलू सिन्दूरेला बहुत सारी गर्ल्स डॉल्स मिलेंगे जहाँ पे।

देख लो यहां पे फोटो कवर करने वाला फ्रेम जिसको बोलते हम लोग फोटो में लगाते हैं।

फैमिली का फोटो को निकाल कर हम इस कवर मे डा एड करेंगे।

ये देखो ये है जॉनसन मतलब की इसके अंदर देख सकते हो क्या क्या मिलता है।

और ग्राउंड के साइड पे देखो बहुत सारे लोग है।

धान भी बैठा हो और इधर साइड पे ऐसे मार्क कवर किया गया है।